यहां पर कुछ बॉक्स और कुछ फाइलें रखी हुई भी दिखाई दे रही है और दोनों पर कुछ कागज चिपके हुए भी नजर आ रहे हैं।

ये एक बड़ी सारी बिल्डिंग बनी हुई है जो कि जिसके नीचे एक ज्वेलरी की शॉप भी है बनी हुई है।

और यहां पर बहोत सारे आदमी औरतें भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और कुछ बच्चे भी खड़े हुए हैं।

यहां पर नीचे फर्श पे टाइलें भी लगीं हुईं दिखाई दे रही हैं और पिछे एक व्हाइट कलर का सोफ़ा रखा हुआ है।

एग्जास्ट फैन लगा हुआ नजर आ रहा है और कुछ लाल कलर की नई कुर्सियां जिनपे --

यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर पोस्ट ऑफिस के बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं एक में एक बालकनी में आदमी भी है।

जहां पर एक आदमी ने सफेद धोती और सफेद गोल कुर्ती पहनकर डांस परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है।

सुंदर डेकोरेशन किया हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर लाल और पीले कलर से भी छत की सजावट की हुई दिखाई दे रही है।

कुछ गमले कुछ कुर्सियां बनी हुई दिखाई दे रही है यहां एक औरत बैठकर बनाती हुई दिख रही है।

ये एक डाकघर की तस्वीर दिखाई दे रही है जोकि झोटवाड़ा डाकघर लिखा हुआ है।

यहां पर दो शटर बने हुए हैं दो खिड़कियां बनी हुई है एक में कुछ लोग लाइन लगाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

ये एक मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही है ये एक रात में ली हुई तस्वीर दिखाई दे रही है।

यहां पर सामने की तरफ दो मूर्तियां बनी हुई है जिन पे ऑरेंज कलर की हजारे की माला चढ़ी हुई दिखाई दे रही है।

वहां पर दो आदमी लगे हैं जो मशीन में कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।